ये अस्पताल है यहाँ से हमें ऑटो वगैरह मिलते हैं।

देखो गाइस आज हम कचेहरी आये हुए है।

ये देखो पानी कहाँ से बह रहा है।

हाँ इन्होंने खड़ी कर दी। खड़ी हुई की फोटो कितना अच्छा है।

और इसके साथ जो सलाद आई है प्याज आई है मस्त लग रहा है यार चटनी की भी बहुत अच्छी लग रही है।

ये समंदर तो देखो कितना बड़ा है और कितनी दूर तक पानी-पानी है।

और मैंने बोला था ना कि इसने बहुत अच्छी डेकोरेशन करा रखी है यहाँ लोग लौंडे जाते हैं और फोटो खींच के लाते हैं।

बाईपास रोड पे कितना जाम लग गया। सब --

जो सेंट्रल बैंक है और इसका एटीएम है।

और ये रेड कलर का है और इसमें हरिया की पत्नी अच्छी लग रही है।

शायद फूल तो बहुत अच्छा है।

कितनी मेहनत कर रहा है यार ये और काफी बड़ी दुकान कर ले कि इसने अपनी परचून की ये देखो।

जिससे कोई दिक्कत नहीं हो लाइट का पाइप भी डल गया अब लाइट डलेगा इसका।